बैलून का कलर व्हाइट और रेड पीला कलर का है।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

बहुत सारा टेबल कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

काउंटर भी लगाया हुआ है।

जो व्हाइट और ब्लू ब्लैक कलर का है।

रेड कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है।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

कुर्सी के ऊपर बहुत सारा आदमीन बैठे हुए हैं।

घर में पंखा भी लगाया गया है जो वाइट कलर का है।

आदमी लोग भी दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

यह एक घर है घर का कलर पीला कलर से पेंट किया हुआ है।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

डैम में दो नाव भी चल रहा है।

और गमला में पौधा लगाया हुआ है ।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

घर में बहुत सारा लाइट जल रहा है जो वाइट कलर का है।

कुर्सी भी रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

यह एक दुकान है दुकान में शटर लगाया हुआ है।

दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ हैं।

घर में बहुत सारा टेबल कुर्सी भी रखा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

घर के अंदर पंखा भी दिखाई दे रहा है।

घर में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है जो वाइट और ब्लैक कलर का है।